एक बहुत बड़ा रूम दिखाई दे रहा है रूम में एक सैलून खुला हुआ है सैलून में बहुत सारे बैं बाल कटिंग के सामान रखे हुए हैं टी_वी लगा हुआ है सैट टॉप बॉक्स लगा हुआ है एक ए_सी लगा हुआ है।

ये हेयर मशीन लगा हुआ हैं बहुत सारे कुर्सी लगे हुए है बहुत सारे स्टूल लगे हुए है स्टूल में बाल्टीन रखा हुआ हैं।

वहाँ एक बाल्टीन रखा हुआ है दीवार दिख रहा है दीवार पे एक टाइल्स लगा हुआ दिख रहा आधा पे आधा दीवार व्हाइट कलर से रंगा हुआ है पंखा लगा हुआ है एक बोर्ड लगा हुआ है एक--

बहुत सारे छोटे-छोटे रूम दिख रहे हैं सीढ़ी दिख रहा है बल्डिंग के बाहर बहुत सारे बाइक लगे हुए दिख रहे हैं बिल्डिंग के बगल में एक रोड दिख रहा है रोड के बगल में बहुत सारे पोल लगे हुए हैं पोल --

यहां बगल में रोड बने हुए हैं बहुत सारे रोड के बगल में बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं बहुत सारे पोल लगे हुए हैं पोल पे बहुत सारे तार गए हुए हैं बहुत सारे बाइक दिखाई दे--

में एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल ऑरेंज कलर का रंगा हुआ ऑरेंज नी-नीले कलर का इसमें बहोत बड़ा शटर लगा हुआ शटर के पीछे गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है इस हॉल में बहोत सारे --

एक बहोत बड़ा हाल बना हुआ दिखाई दे रहा है इस हाल को व्हाइट कलर से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है पूरा इसमें बहोत सारे कुर्सी लगे हुए हैं कुर्सी में बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं आगे में।

टेबूल रखा हुआ है डेकोरेशन किए हुए हैं बैलून लगे हुएं हैं।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

के बगल में इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगे हुए हैं मैदान में बहुत सारे बड़े बड़े पेर पौध पेर पद दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे छोटे पेर पौधे दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सी है टेबल भी लगे हुए हैं बीच में बहुत सारे टेबल लगे हुए हैं साउंड बॉक्स लगे हुए हैं बहुत सारे बैलून टांगे हुए हैं जो बहुत रंगे हैं ये पंडाल वाइट और रेड कल --

नीचे बहोत सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें मोल में बहुत सी बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई हैं जो लोहे--

झूमर लगे हुए है बहुत सारे टेबुल लगे हुए है कुर्सी लगे हुए है टी_वी लगा हुआ है एक बड़ा सा स्टील का गेट लगा हुआ--